तरबूज केला अनारस--

यह एक रेस्टुरेंट का तस्वीर है जहाँ पर रेस्टुरेंट में बहुत सारे टेबल और चेयर लगे हुए हैं ।

यह एक हाईवे है जहाँ पर दो रेसिंग बाइक खड़ी है।

जीन्स और पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है ।

यह एक बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पर --

पूरा लग रहा है देखने में और --

अरैन्ज करके हेंगर में टांग कर के रखा हुआ है। यहाँ पर लेडी --

एक मस्जिद है मस्जिद में --

दे रहे है। यह जिम और पूरी तरीका से खाली है। अभी भी --

बहुत सारे चिप्स के पैकेट स टाँगे हुए हैं ।

यह एक फिटनेस सेंटर है जिसका नाम है ए-वन फिटनेस सेंटर --

यह एक स्नैक्स शॉप है इस शॉप में बहुत सारे स्नैक्स मिलते है एवं --

कोल्- ड्रिंक वगेरा भी मिलते है वाटर भी मिलता है और एक व्यक्ति चेयर पे बैठा है।